और यहाँ पे लोग इक्कठे है और पीछे चार लोग कुछ इनको समझा रहे है।

जिसमें उम्म कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखी गई है एंड गणतन्त्र दिवस की प्रोग्राम है जिसमें बच्चों की तैयारियों।

को देखा जा रहा है और बच्चें भाषण दे रहे है गणतन्त्र दिवस के अवसर पर उसी की तस्वीर है।

एक बस स्टैंड की तस्वीर है जिसमें बस ऑटो --